इस घर का मुख्य द्वार दिखने में बहुत ही सुंदर है उस पर बहुत ही सुंदर तरीके से कारीगरी की गई है यहां घर में बहुत से पेड़ भी हैं।